access your library account on the web पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे किweb पर patron के रूप में अपने library account को कैसे access करना है
और इसके फायदे क्या हैं
इस tutorial को record करने के लिए मैं firefox web browser का उपयोग कर रही हूँ
यह tutorial मानता है कि आपके system administrator ने server पर koha library संस्थापित किया है
superlibrarian या library staff ने इस koha library में कुछitem types बनाया है
यह tutorial मानता है कि आपको इस koha library का url पता है
और आप इस library के patron हैं
यदि नहीं तो कृपया इसके लिए अपने librarian या system administrator से संपर्क करें
शुरू करते हैं अपना web browser खोलें और
यह url संस्थापन के समय आपके sysad द्वारा दिए गए port number और domain name पर आधारित है
अब enter दबाएँ
शीर्षक welcome to spoken tutorial library के साथ नया opac पेज खुलता है
opac के ऊपरी दाएँ कोने पर login to your account पर click करें
यह login library के patrons के लिए है
खुलने वाली नई window पर हमें अपना patron login और password प्रविष्ट करना होगा
याद रखें कि हमने पहले के tutorial में ms reena shah नामक patron बनाया था
मैं reena से login करूंगी और यहाँ उसका password type करूंगी
यदि आपने एक अलग partron बनाया है तो यहां उस login विवरण का उपयोग करें
hello reena shah नामक नया पेज खुलता है
यह पेज patron के summary के विवरण को दर्शाता है
पेज checked out 1 आइटम के विवरण को दर्शाता है जैसे
याद रखेंयह प्रविष्टि पहले के tutorial के assignment में बनाई गई थी
पेज के बाईं ओर स्थित अन्य टैब पर ध्यान दें
your summary your fines
your personal details your tags
change your password your search history
your reading history your privacy
your purchase suggestions your messaging और your lists
इन टैब पर क्लिक करने पर patron का विवरण खुलता है
opac इंटरफैस के ऊपरी दाईं कोने पर ध्यान दें कि वहाँ cart और lists दो tabs हैं
यदि आप किसी भी library item को cart में जोड़ना चाहते हैं तो निम्नानुसार करें
इस श्रृंखला में पहले बताए गए अनुसार opac में item search करें
मैं microbiology किताब को search करूंगी आप उस वस्तु को search कर सकते हैं जिसे आप अपनी library से चाहते हैं
उस keyword के search परिणाम प्रदर्शित होते हैं
प्रत्येक शीर्षक के तहत निम्नलिखित विकल्प दिखाई देते हैंplace hold save to lists add to cart
ध्यान दें कि option place hold केवल उस items के लिए दिखाई देगा जिसे library द्वारा जारी किया जा सकता है
किसी भी विशेष item को cart में जोड़ने के लिएadd to cart option पर click करें
यदि कई items को cart में जोड़ा जाना है तो निम्न steps को करें
items के ठीक ऊपर select titles to tag पर जाएँ
cart में एकाधिक items जोड़ने के लिए संबंधित items के बाईं ओर स्थित radio button पर click करें
अब शीर्ष पर जाएं select titles to tag with selected titles के रूप में दिखाई tag
dropdown से cart पर click करें सभी चुनें all items cart में चले जाएँगे
फिर interface के ऊपरी बाएं कोने पर जाएँ और cart टैब पर जाएँ
dropdown से items in your cart: 2 पर click करें
कृपया ध्यान दें: नंबर 2 चयनित वस्तुओं की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है
यदि आपने भिन्न items चुने हैं तो संख्या आपके interface पर दिखाई देगी
क्लिक करने पर निम्न options के साथ your cart नामक नई window प्रदर्शित होती है:
download print
empty and close
आप इन्हें स्वयं खोज सकते हैं
खोजने के बाद इस window को बंद करें
ऐसा करने के लिए पेज के ऊपरी बाएं कोने पर जाएं और cross button पर click करें
अब हम opac interface पर हैं
यदि एक item lists में जुड़ा है तो item के नीचे save to lists पर click करें
क्लिक करने पर एक नई window add to a list विशेष item के शीर्षक के साथ खुलती है
मेरे इसमें industrial microbiology patel arvind h है
add to a new list section में list name में सूची के लिए name type करें
यह पूरी तरह से आपके संदर्भ के लिए है
आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक name दे सकते हैं
फिर category section में dropdown से private पर click करें यहि koha द्वारा पहले से ही चयनित नहीं है
यह सुनिश्चित करता है कि सूची केवल आपके लिए दिखाई देगी
अब पेज के नीचे save पर click करें
हम फिर opac इंटरफेस पर हैं अब opac इंटरफेस के ऊपरी बाएं कोने पर lists टैब पर क्लिक करें
ड्रॉपडाउन से मैं microbiology पर क्लिक करूँगी
सेव items अब सूची में प्रदर्शित होता है
अब बाई ओर के tabs को देखें
शुरू करने के लिए मैं your personal details टैब पर click करूंगी
ms reena shah के विवरण के साथ एक नया पेज खुलता है
फिर उसी पेज के दाईं ओर your reading history पर click करें
निम्न विवरण के साथ checkout history पेज खुलता है
call no और date
अब उसी पेज के बाईं ओर your purchase suggestions पर click करें
your purchase suggestions पेज खुलता है
tab new purchase suggestionटैब पर click करें
शीर्षक enter a new purchase suggestion के साथ नया पेज खुलता है
यहां हमें कुछ विवरण भरने के लिए कहा जाता है
title: author: copyright date:
standard number isbn issn or other:
publisher: collection title:
publication place: item type:
reason for suggestion: और notes:
ध्यान दें कि: लाल रंग में चिह्नित title field अनिवार्य है
मैं title में genetics प्रविष्ट करूंगी
फिर मैं standard number isbn issn or other में 1234567891 प्रविष्ट करूंगी
पेज के नीचे submit your suggestion पर click करें
your purchase suggestions नामक नया पेज फिर से खुलता है
इसी के साथ हमने सीखा है कि patron koha library में किताब search करने के लिए opac का उपयोग कैसे कर सकता है
अंत में पेज के ऊपरी दाएं कोने में logout पर क्लिक करके opac account से लॉगआउट करें
इसी के साथ हम tutorial के अंत में पहुंचते हैं
संक्षेप में
नियतकार्य के लिए किसी अन्य किताब के लिए खरीदारी सुझाव दें
निम्नलिखित link पर video spoken tutorial project को सारांशित करता है
spoken tutorial project team: कार्यशालाएं आयोजित करती है और प्रमाण पत्र देती है
कृपया अपने प्रश्नों को इस forum में post करें
spoken tutorial project को एनएमईआईसीटी एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं ज्योति सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद